मुझे यहा पे दो आदमी दिख रहा है।

यहाँ पे आदमियों के लिए बाल कटाए जाते है ढाड़ी बनाई जाती है एक आदमी अभी यहाँ पे मुझे--

अनार दिख रहा है बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं ट्रकें दिख रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये--

फल मंडी है यहा पे फलो की दुकाने लगी हु--

यहाँ मुझे बहोत बडा गेट दिख रहा है उसके अंदर घर दिख रहा है नारियल के --

यहा पे मुझे कुछ दुकाने नज़र आ रही है।

बोर्ड दिख रही है रिक्से दिख रही है ठेले गाडिया दिख रहे है बाइके दिख रही है ऐसा लग रहा है जैसे --

यह एक सड़क है सड़क के पास फल की ठेले लगे हुए बाइक है।

यहा पे सभी आगे ए_टी_एम के लिए जाने के लिए खड़े--

यहा मुझे बहोत बड़ी लोहे की गेट दिख रई है।

हाथ भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा जमीन लिया और जमीन पे घर बना रहा हो।

यहा पे बोर्ड लगा हुआ बोर्ड में लिखा हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक --

कोई बैंक हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक --

मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पार्क हो पार्क के पास बहोत हरे हरे पेड़ है।

यहा पे बोहोत सारी लाइटे लगी हुई है बोहोत सारे लोग बेठे हुए है चेयर लगी वी है।

ऐसा लगरा है जेसे की कोई होटल वगेरा हो--

और वो दूकान है जो की किताबे बेच रहा है।

अप उपर से निचे लाइटे लगी हुई है साइड साइड में बोत सा--

यहाँ मुझे दो उम्म वाइट कलर की फोर व्हीलर बोलोरो दिख रही है गाड़ियाँ दिख रही है एक--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

बहोत सारे आदमी है जो की खारे मुझे असा लगरा किसी सादी में आये हुए है।

और पार्टी एन्जॉय कररे बोहोत अच्छा लग रहा है यहा पे--

कुछ टीशर्टस समेट के रखा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कपड़े का सेल होता हो।

जोकि गाडिया चलती है इसे गाडी में नही रहेगा तो गाडीया नही चलेगी ये पट्रोल पम्प --

और सामने सादा कलर का एक टेबल भी रखा हुआ है यहाँ पे किताबें भी दिख रही हैं कापियां भी दिख रही हैं।

ठीक करवा रहा है हेअर स्टाइल का लुक चेंज करवा रा असा मुझे लगरा--

ये क्रेजी चिकन वेज नॉनवेज कोई दूकान है।

और आस पास देखिए दो आदमी है जो कि बाहर जाने का तैया--

यहा पे मुझे लाल लाल और उपर में गोल्डन कलर की--

यहा पे लोहे की गेट बनी हुई है।

के बच्चे आयेंगे जायेंगे की गाडिया आएगी जायेगी--

कुछ आदमी भी दिखरे कुछ औरते भी दिखरी है चर्च के अन--

और अगल बगल हडे हडे पत्ते वाले पेड़ भी दिख रहे हैं मुझे जोकि छोटे छोटे गमले में लगे हुए हैं।

यहाँ पे मुझे महजिद दिख रहा है महजिद में घड़ी लगी हुई है महजिद के लोग बेठ के आपस में कुछ बाते कर रहे है।

पंखा लगा हुआ है लाइट भी दिखरा है मुझे यहा पे--

ये लड़कियां जमीन पे चटाई बिछा के आपस में कुछ कर रहे हैं जैसे कि योगासन सीख रहे हैं।

छह लाईट डेकोरेट किया हुआ है बहोत अच्छा लग रहा है और सब डांस कर रहे है आपस में--